रेड रंग का कुछ बिल्डिंग वगैरा बनाया गया है ये हमको नहीं पता है कहाँ का है और उसके चारो तरफ से --

इस पिक्चर में एक मछुआरा मछली बेच रहा हैं और उसकी मछली की फसने की तरीके बहुत अनोखे लग रहें हैं। पिक्चर में दिखाया जा रहा है की मम्म मनुष्य मछुआरा अपने सामने विभिन्न प्रकार की मछलियाँ रख रा रखा हुआ है और उसको खरीदने के लिए बहुत सारे व्यक्तियाँ आये हुए हैं।

और तो इस लड़के के चारों तरफ से रेड रंग का कुछ कपड़ा लगा हुआ --